इस इमेज में हमें एक घर दिखाई दे रहा है। घर के पास में एक स्टेज लगा हुआ है स्टेज एक --

सफ़ेद रंग की बोतल दिखाई दे रही है। एक लाल रंग का कप दिखाई दे रहा है और गेट दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है और एक तस्वीर दिखाई दे रही है।

सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही है। पानी चमक रहा है और सामने की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे है और आसमान --